यह एक हॉल है यहाँ पे एक घडी भी दिख रही है दो झंडे दिख रहे है एक नीले कलर का पर्दा डला है बलून भी लगे हुए है दीवाल में ऐसी भी दिख रही है।

यह एक बिल्डिंग है ब्रॉउन कलर का इसमें पेंट किया गया है कुछ पेड़ भी दिख रहें हैं सटक रखी हुई है डस्टबिन का दिख रहा है कुछ सीढियाँ भी दिख रहीं हैं।

ऊपर बहुत सारी टंकियाँ रखी हुई है ये येलो एंड रेड कलर का इसमें पेंट किया गया है कुछ झाड़ भी दिख रहे हैं आसमान भी दिख रहा है।

नीचे फ पूरा नीचे मैदान टाइप का बना हुआ है।